यह कोई हॉस्पिटल का फिगर दिखाया गया है जो कि बहुत मस्त दिखने में है यहाँ पे बहोत दूर-दूर से लोग इसमें इलाज कराने के लिए आते हैं।

जो कि दिखने में काफी मस्त और अच्छा है।

यह एक बहुत सुन्दर बहुत अच्छा कोई एक कोई अच्छा रूम मस्त के दिखाए गए हैं ।

जिसमें एक लड़का बुल्लू कलर का शर्ट पहना है । दुसरे वाइट कलर की फ्रॉक पेहनी है जो की सब मस्त है देखने में टप है ।

एक बहुत सुंदर सा फिगर दिखाया गया है।

यह एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट का फिगर दिखाया गया है जो की इन्कम्प्लेटेड है। जो की कम्पलीट करने में अभी टाइम है और बहोत ही सुंदर से है और बहोत इसको मेहनत से बनाया गया है जो की दिखने में काफी मस्त है और बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते है और--